एक दो डेक्स भी पड़े हुए हैं और दो पत्थर के वो बने उस पर भी एक आदमी और एक लड़का बैठा हुआ है।

बहुत सारे कुरा कर करकट पन्नि अन्नी पड़ी हुई हैं और चारों तरफ बाउंड्री सी खींची हुई है।

कुछ जीने की पैकरिया बनी हुई है और चारों तरफ बाउंड्री खींची हुई है जो सफेद और लाल कलर की है।

एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने पिले कलर का और कुर्ता और सफेद कलर का पैजामा पहेन रखा है।

बहुत सारी बिल्डिंग भी बनी हुई है और ऊपर की तरफ एक बलब भी लगा हुआ है।

यह एक किसी का मकान है और इसमें जो एक डेस्क पड़ी हुई है उस पर बोतल और एक स्कैनर भी रखा हुआ है।

बुढ़े बाबा भी खड़े हुए हैं और पीछे की तरफ एक मकान भी बना हुआ है।

यह एक लड़का दौड़ते हुए नजर आ रहा है इसने सफेद कलर की ड्रेस पहन रखी है।

एक घड़ी जैसी दो स्वीच बने हुए हैं और दो तीन तीन लाइट लाल कलर की जल रही है।

एक बन्द करने वाला शटर जैसा लगा हुआ है और उसके पड़ोस में एक विंडो है।

उपर एक फूल जैसा बना हुआ है और बहोत सारे तार भी निकले हुए हैं।